लग रहा है जैसे कपड़े का कोई दुकान हो किताब का भी दुकान हो है एक काउंटर भी आगे बना है ।